जैसा कि आप तस्वीर को देखकर समझ पा रहे होगे यहां पर यह किसी बांध के सा आ सामने की तस्वीर है।

यह एक बहोत बड़ा पब्लिक स्कूल दर्शाया गया है जैसे कि आप तस्वीर में देख हि पा रहे होंगे यहां पर महेंद्र मॉडल स्कूल के नाम से--

घने घने पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं मुख्यतः यहां पर--

यह तस्वीर एक तो ढाबे की नजर आती है जैसा कि तस्वीर में देख सकते हैं यहां पर एक बहुत बड़ा सा ढाबा बना दिखाई दे रहा है।

यहां तस्वीर एक सुंदर सी कलरफुल तस्वीर है ये है एक बहुत बड़ा रोहतक का--

जहां पर अ लोगों की भीड एकत्रित हो रही है।

कुछ व्यक्ति बाहर खड़े होकर बात करते नजर आ रहे हैं।

एक लेडिस यहां पर गार्डनिंग करती नजर आ रही है।

पार्किंग नजर आ रही है ढाबे के सामने कई सारी बाइक स्कूटीज लाइन से खड़ी हुई है व्यक्ति चलाने के लिए तैयार हो रहे--

अ पैरों के स्थान पर बिछाया गया है।

वैसे तो आप को ऑन रोड की तस्वीर दिखाई गई है।

यहां पर चाऊमीन समोसे बर्गर फास्ट फूड चीजें मिलती हैं और दुकान के बाहर ही --

और मुख्यतः यहां पर ऑटो रिक्शा --

यह तस्वीर एक ज्वेलर्स की दर्शाइ गई है। जैसा की तस्वीर में देखा ही पा रहे होंगे।

और यहां पर अलग अलग बेंचस पे अलग अलग बच्चे बैठ कर--